गमला रखा है कूलर है गैस सिलेंडर है।

यहां पे एक बड़ा सा काउंटर है सफेद कलर का शीशे वाला।

यहां पे एक दीवाल पे बोहोत सारी फोटो छप लगी हुई हैं।

आसपास खंभे वाली ग्रिल है उन पे कपड़े पन्नी कुछ लगी हुई है।

यहां पे दो खंभे हैं और दोनों पे लाइट लगी हुई है वाइट वाली और यहां पे एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पे बच्चे खेल रहे हैं।

यहां पे नीचे पत्थर हैं और येलो कलर का काउंटर है।